मुझे हर जगह घास दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर कई सारे शेलफ दिखाई दे रही है।

लाइट बल्ब भी दिखाई दे रही है।

मुझे शेल्फ्स के अंदर कई सारे खाने की चीजे भी दिखाई दे रही है।

दीवारों पर पोस्टर चिपकाया हुआ भी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में चार प्लेट दिखाई दे रहा है।

मुझे कुछ घरे भी देखने को मिल रहा है।

एक स्टैचू भी दिखाई दे रहा है।